एक आदमी दिखाई दे रहा है और--

और भी बहुत कुछ दिख रहा है जैसे कि आसपास किसी के घर भी हैं।

जे किसी दुकान की फोटो दिखाई दे रही हैं जिसमें की बच्चों की साइकल छोटे छोटे--

यहां पे जेन्ट्स का ही समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सामने उसके सामने दो और भी बकेट्स है और नीचे रेड कार्पेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक लड़की और लड़के का बनाया हुआ जिसको कपड़े पहनाए हुए है।